पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिनकी दीवारों का कलर ग्रे एंड वाइट दिखाई दे रहा है | कुछ काँच का फर्नीचर दिखाई दे रहा है | यहाँ पर वाइट कलर की दो कार दिखाई दे रही है।